इसमें व्हाइट और रेड कलर के गुब्बारे नज़र आ रहे है इसमें एक एल.सी.डी. नज़र आ रही है।

यहां एक मार्किट है जिसमें दुकाने नजर आ रही हैं इसमें कुछ दुकाने बोहोत अच्छी लग रही हैं ।

यहां एक किराना स्टोर नजर आ रहा है | जिसमे किराने की चीज़े मिली जाती हैं इसके स्टोर में एक सोकेज --

यह एक जमोई का कारीले नजर आ रहा है इस कारीले का नाम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जमुई कार्यालय है ।

जिसमे एक गाड़ी और कुछ लोग नजर आ रहे हैं जोकि पेड़ नजर आ रहे हैं ।

कलर और रेड कलर के फूलो के द्वारा दिल बनाया हुआ है जो बेहद ही खूबसूरत और शानदार नजर आ रहा है।